यहां पर एक तुलसी का पौधा भी दिखाई दे रहा है।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

सामने यहां मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

यहां पर सान्वी क्लिनिक लिखा हुआ है।

जहां लकड़ी के बहुत सारे पटरे रखे हुए हैं।

सामने यहां मुझे एक हरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर--